सामने की तरफ एक प्लेट में कुछ खाने की चीज रखी हुई है यहाँ पर दो टिक्की नजर आ रही है एक टिक्की नजर आ रहा है।